मान मे बादल सब भी दिखाई दे रहा हैं।

और बहोत सारे फ्लावर पॉट लोग भी रख के हैं।

और एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी है।

एक लैंडमार्क भी लगा हुआ है।

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ सब भी है।

जिसमें सुधा पार्लर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे ब्राउन कलर का टेबल दिखाई दे रहा है।

से बना सिरी भी है।

इस तस्वीर में मुझे बार्बर दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक मनुष्य बैठ के है।

इस तस्वीर में मुझे मछली बेचने वाला जगह दिखाई दे रहा है।

उसके किनारे में एक गेराज में बना के है।

बहुत सारे फ्रिज सब भी।

लाइट सब भी जला हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

एक आईना भी लगा हुआ है और मनुष्य लोग भी हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा मेकअप रूम दिखाई दे रहा है।

पीछे में काले रंग का सोफा सेट सब भी है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा सेलोन दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे अलग अलग किसीम के समाने है।